जो एक बेहतरीन बारिश का संकेत दे--

एक लड़का जीसने सफेद और काली लाइनदार टी शर्ट पहन रखी है वो ओ साइकल पर खड़ा --

और स्टेशन लगभग खाली है। कोई ट्रेन नहीं खड़ी--

और एक जावा का बोर्ड लगा है जिसका कलर सलेटी है और सफेद रंग से जावा लिखा --

एक इन सभी फूलों के बीच एक लाल रंग का छोटा फूल भी --

यहां दो लकड़ी के सोफा सेट है।

एक नाव पर केवल दो व्यक्ति बैठे--

यहां पहाड़ पर कुछ आकृति बनी--

इस तस्वीर में बहोत सारी हरी सब्जियां हैं।